ऊपर लगा हुआ है बोर्ड जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हिंदी लेटर्स कुछ लिखा हुआ है और निचे नंबर्स भी लिखे हुए है।

हम देख पा रहे है एक पानी से भरा हुआ कोई और ऊपर खुला आसमान और काफी दूरी पे हमे जमीन जैसा कुछ देखने को मिल रहा हैं ।